सामने ही एक लोहे की गेट लगी है जो की छोटी है लेकिन बंद है।

इसमें मे से दाएं साइड की तरफ एक आदमी जाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसने काली पैंट और नीली शर्ट पहनी हुई है।

सामने की तरह एक व्हाइट बोर्ड भी लगा हुआ है ऊपर कई सारे पंखे और लाइट्स लगी हुई है।

पीछे की तरफ एक मंदिर है और उसके पीछे की तरफ एक लाइट के ट्रांसफार्मर के रखने की जगह है।

नीचे की तरफ हम मिट्टी का एक मैदान देख सकते हैं जिसके आसपास छोटे छोटे पत्थर भी लगे हुए हैं।

वॉटर फॉल के उपर हमें तीन लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है नीचे की तरफ भी कई लोग नहा रहे है तो कई लोग अपने अपने काम में बीजी है।

सभी सोफो पर पन्नी चढ़ी हुई है यह सभी सोफे अलग अलग प्रकार के भी हैं।

अगल बगल रोड के हमें पाइप दिख रहा है और कई सारे घास दिख रहे हैं।